जिसने ब्लेक कलर का कुर्ता पेहन रखा है इसकी गले मे एक दस्ती है और यहा पर कुछ बलून लगे हुए है अलग-अलग कलर के।

कुछ पेड़ छोटे-छोटे भी है एक खंबा दिखाई दे रहा है और एक भैया दिखाई दे रहा है जो की टी-शर्ट पहन हुआ है और लोअर पहेन रहे।

गोबी हरे-भरे है एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की जर्किन पहन रहा है इयरफोन लगा रखा है व्हाइट कलर --

और यहाँ पर कुछ बाइक दे रही है जो की यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर हमे कुछ गेट दिखाई दे रहे है।

कुछ केरम बोर्ड दिखाई दे रहे है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ बॅट बॉल दिखाई दे रहे--

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो की बैठे हुए है कुछ चेयर दिखाई दे रहे है।